अशोक स्तूप दिखाई दे रहा है और उसके सामने बहुत पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

इस चित्र में हमें सड़क दिख रहा है। सड़क पर वाहनें रुके हुए है।